एक खाने का चित्र है साथ में ही लाल रंग की एक प्लास्टिक की बकेट भी रखी हु --

क्लास सभी सामान का कार्य कर रही है साथ में ही बड़े से टेबल पर बहोत सा--

बैट्स पर बहुत सारी रबड़स लगाई हुई है ऊपर जो--

लोगों की भीड़ है महिला पीले रंग की साड़ी पहने हुए वहां खड़ी है ए.टी.एम. के बाहर लोगों की भीड़ है अंदर जाने के लिए--

सड़क के किनारे बोहोत सारे लोगों की भीड़ है दो मंजिला ईमारते है दुकानें बनी हुई है चारों तरफ ए. टी. एम लिखा हुआ हैं।

समुद्र के किनारे एक नाव खड़ी है जिसमें बहोत सारे झंडे रंग-बिरंगे लगाए हुए है और इंडिया का झंडा भी है बाहर नीचे भूमि पर--

ली है सड़क पर एक सफेद रंग की लाइन भी बनाई हुई है और मोटर साइकिल चल रहे है आस-पास हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है बी--

लकड़ी के बॉक्सेस में कांच के बहुत ही सुंदर मिरर लगाया हुआ है जिसमें पुरानी वस्तुए रखी हुई है और शिलालेख--